बराबर में थमला सा पड़ा है कुछ सामने और एक

में एक मेज पड़ी है और--

और बहुत सारे कुर्सी है।

मछली की दुकानें हैं और उसका ऊपर तक उतार रखी है मछली की।

और बहुत भीड़ लग रही है यहां पर।

यहाँ पर बहुत बड़ी एजेंसी है।

और उनमें महिंद्रा ट्रैक्टर है आयशर आयशर सब वाइट कलर का।

और एक लाल कलर का ट्रैक्टर सा खड़ा।

चावल बरब्बर में कुर्सी और चोकर के कट्टे से रखे हैं और एक--

बनाने के एक पंखा रखा है और कुर्सी रखी है।

एक पीले कलर की धोती पहन रहा और परने धरा है एक लाल कलर का धोता पहना है परना सा।

यहां पर ऑफिस है ऑफिस में बच्चे पढ़ा रहे है और यहां पर बहुत सारे--

बरब्बर में पेड़ बहुत सारे और--

यहां पर जोकर वोकर सुगन्या वो पेंटिंग के--

यहां पर आंख की पेंटिंग सी बन्नी है और बर्बर में फूल के गम--

ओड़सा व्हाइट सा है और यहां पर बहुत सारे बादल छे हैं।

और पेड़ है यहां पर और एक आदमी एक आदमी खड़ा है। उल लड़का को--

गाड़ी खड़ी है और यहां पर एक टम्पो सा है और वो गाड़ी जा रही है।

बैंबू से बजाने के और यहां पर

वे घंटी सी और यहां पर बहुत सारा सामान है।

यहां पर नीचे पत्थर लग रहा है और

यहां पर बहुत बड़ा पार्क है पार्क में बहुत सारे--

एक लाल सा कलर का वो रखा है।

यहां पर और यहां पर--

यहां पर कमरा है कमरे में।

एक आदमी खड़ा है नीले कलर के कपड़े पहना है और जूते पहना है।

अलमारी सी रखी है और बराबर में दो वे रखे हैं बोक्स से बराबर में।

और एक लकड़ी सी खड़ी है और यहां पर लिख रहा है कुछ और रोड है यहां पर।

काले कलर का ठंडा है बड़ा है छोटा है और फ्रूटी बूरूटी है और संतरे कलर की ठंडा है यहां पर।

टूशन पढ़ाने का वो है बहुत बड़ा और कंपूटर गे कंपूटर से धरे हैं और यहां पर --

और यहाँ पे व्हाइट कलर का है सोफा सा

यहां पर एक शिफ्ट स्विफ्ट गाड़ी है।

और यहां पर मशीन सी लगी है बोतल रखी है बराबर में और टायर सब--

यहां पर एक पहाड़ सा है।

एक पेट बुल का कुत्ता सा बैठा है और मेज इसी पे--

में एक गेट सा खुला है और एक बराबर में नीले कलर का गेट है दो--

दो तीन एक स्टूल सा पड़ा है और कुर्सी है और यहां पर बराबर में शटर जैसा बंद हो रहा है एक।

और यहां पर ऊपर चढ़ती है गाड़ी ऊपर को--

बहुत बड़ी ट्रेन है यहां पर स्टेशन सा है और यहां पर--

बरबर में और पेड़ पौधे हैं यहां पर पेड है बरबर में--

यहां पर आंखों की दुकान सी है। यहां पर बहुत सारा शीशा सा चढ़ रहा है। ऊपर बोर्ड सा लग रहा है और --

दो तीन आदमी से हैं और यहां पर बराब्बर में ए_सी का लखा है।

और बोड सा लग रहा है बोड सा धरा हैं यहां--

और यहां पर आदमी हैं और बहुत सारी लेडिस हैं और--

वो दरवाजे गये हैं मैट से--

यहां पर बहुत बड़ा हॉल सा है और उसमें लाइटें लग रही है बहुत सारी।

और यहां पर फूल है और बहुत सारे गेट --

ऊपर ऊपर में सीलिंग व्हीलिंग हो रही है ऊपर।

यहां पर मार्केटिसिंग की गली है उसमें पेड़ पौधे लग रहे--

और यहां पर कुत्तों की दवाइयां हैं यहां पर की है और यहां पर बहुत सारा सामान है।